ये दृश्य एक चर्च का है जहां पे पादरी के द्वारा बायबल को हाथ मे रखकर और बहुत सारे जो पादरी मे उनके से कुछ प्रार्थना करवा रहे है यहां का जो ढंग है जो बहुत शांतिपूर्वक है और देख रहे है की आप --

का बहुत ही खुबसूरत बहुत सारे हरे-भरे पेड़ है और कुछ बाइक यहां पे लगे है कुछ बाइक स्टैंड के पास लगे हुए है ।

जैसे में सजावटी फूल है गेंदे का फूल है गुलाब का फूल है चमेली का फूल और भी अन्य फूल दिखाई दे रहे हैं।

की सभी गाड़िया चलती माल गाड़ी ये रेल गाड़ी --

यह जो दृश्य है गोल्डन --

जहां पर किसी भी व्यक्ति को अगर पैसे की जरुरत पड़ती है तो वो गोल्ड रख कर --